यहाँ पे भगवान का नाम लिया जा रहा है और यह जगह बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ पे बहुत सारे फैन चल रहे है।

और यहाँ पे एक डब्बे पे उन्होंने यहाँ पे और एक और बहुत सारी मछली रखी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे पानी रखी हुई है और उसपे बहुत सारे मछली दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत सारा साइकिल मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे वो ब्लू कलर का शर्ट पहना है और पीछे में बहुत सारे आदमी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना वजन कमा रहे हैं।

पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें अ एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है और ये बिल्डिंग में न ही कोई सीमेंट किया हुआ है न ही कोई रंग किया हुआ है--

और यहाँ पे बहोत सारे इक्विपमेंटस दिखाई दे रहे हैं एक दरवाजा दिखाई दे रहा है यह जीम का कार्पेट है यहाँ पे ब्लू कलर का है।

और दूसरी और अ यहाँ पे बहुत सारे जंगल दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत घने घने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ये रस्ता बहुत ही साफ लग रहा है ये लड़का ने यहाँ पे पिंक कलर का टी शर्ट और यहाँ पे ब्लू कलर की जींस पहनी है।

यह एक गार्डन दिखाई दे रही है जहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे झूला झूल रहे है यहाँ पे एक झूला झूल रहा है बच्चा और पीछे में बहोत बड़ा सा एक मैदान दिखाई दे रहा है और एक बड़ी सी यहाँ पेड़ दिखाई दे रही है।

एच_डी_एफ_सी बैंक है जहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और ये दरवाजे पे यहाँ पे टोल फ्री नम्र लिखा हुआ है नो स्मोकिंग लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक आदमी खरा है जो अपने कमर पे हाथ दे के जो यहाँ पे वाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर के पेंट पहना है और यहाँ पे बहोत सारे आदमी खरे है।

एक आदमी खड़ा है जो ब्लैक कलर का पेंट और पिंक कलर की शर्ट पहना है यह सालोन का दरवाज़ा अ शीशे का हैं बाहर मे यहाँ पे ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है।